इसमें वह मशीन दिख रहा है बहुत बड़ा-बड़ा और इसमें टावर दिख रहा है ऊपर चढ़ने वाला है इसमें--

मशीन दूध फैक्ट्री दिख रहा है इसमें ट्रक शो दिख रहा है बहुत यहाँ पे पौधा दिख रहा है आसमान दिख रहा हैं जो वाइट कलर का --

इसमें सूरज दिख रहा है फॉकस मारते हुए दिख रहा है इसलिए बच्चा सब मैदान में खेलते हुआ दिख रहा है इसमें--

ची दिख रहा है इसमें बच्चा में खेलते हुए इसमें में हरा हरा घास दिख रहा है।

वाइट कलर का पेंटिंग रूम दिख रहा है टाइल्स लगा हुआ दिख रहा--

इसमें एक लड़की है जो रोती हुई दिख रही है ये और टिका किया हुआ पीला कलर का रेड कलर का--

इसमें फूकना दिख रहा है इसमें केक सब दिख रहा है घड़ी दिख रहा है इसमें चश्मा दिख रहा है पंखा दिख रहा।

मिट्टी दिख रहा है। यहाँ पे टीना दिख रहा है। यहाँ पे जनरेटर दिख रहा है पंखा दिख रहा है जोखने वाला तराजू दिख रहा है।

साइड वाला टी_वी दिख रहा है इसमें चेयर सब दिख रहा है।

कुछ वाला दो दो चेयर दिख रहा हैं फूल वाला यहाँ पे कॉपी किताब दिख रहा--

पौधा लगाने वाला सामान सब दिख रहा हैं।

मीटर में लाल पीला हरा ये सब दिख रहा है इसमें दिख रहा--

पैसा दिख रहा हैं इसमें दिख रहा हैं इसमें--

इसमें आदमी सब बैठ कर कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ पर रखा हुआ हैं यहाँ पर कोन सी भाषा में व्यक्ति बैठे हुआ हैं --

कुर्सी है वाइट कलर का कुर्सी है यहाँ पर डेस्क भी रखा हुआ है --

दो गाड़ी हैं जो एक मेट्रो का और एक--

इसमें चार्जर का अअ दिख रहा हैं ब्लैक का--

और यहाँ पर लोहा सा दिख रहा हैं इसमें पौधा सा दिख रहा हैं और यहाँ पर रोड दिख रहा हैं जो--

रोड पर उधर पट्टी जैसा पेंटिंग किया दिख रहा है पेंटिंग --

हरा हरा पौधा सब मैदान में दिख रहा है मैदान में--

लड़की सब दिख रहा है सुबह सुबह सब खेलते हुए--

एक और रेड कलर का बाइ गाड़ी लगा हुआ है स्कॉर्पियो यहाँ पे पौधा सब दिख रहा हैं बहुत भरा भरा--

प्लास दिख रहा है पेचकस दिख रहा है ड्रिलिंग मशीन दिख रहा है अब एक और पेंच--

कॉपी सब रखा हुआ दिख रहा है किताब सा दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का--

जो दो पंखा चलता हुआ दिख रहा हैं टीना का घर दिख रहा है बन--

लोहा दिख रहा है आपको दीवार दिख रहा है जो येलो कलर का दीवार दिख रहा--